और वहाँ पे एक दीवाल टाइप से बना हुआ है।

यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिल्ड है।

यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक वाइट कलर का बहोत बड़ा घर है ।

यहाँ पे दिखाई दे रहा है घर है जो करकट से घिरा हुआ है चारो त उपर से ।

यहाँ पे दिखाई दे रहा है दउरा है दउरा में एक फल रखा हुआ है।

और बीच में वहां पे फील्ड टाइप बना हुआ है।

यहाँ पे दिखाई दे रहा है बड़ा सा घर है जो ब्लू और वाइट के है पीछे में भी बड़ा घर है ।।

और जो घर है वो वाइट कलर का है और एक जेंट्स है जो ब्लैक कलर का शर्ट पहने हैं।

और इसपे एक ट्रोली बैग भी रखा हुआ है।